और कुछ लोग भी यहां मौजूद है और नीचे बहुत सारे घास देखने को मिल रहे हैं जो हरे-हरे हैं।

और बहुत सारे वायर देखने को मिल रहे हैं और स्टील के बने--

नीले कलर का चप्पल पहना हुआ है और एक कूलर देखने को मिल रहा है और लाइटे भी है।

और यहां कई सारे आदमी देखने को मिल रहे हैं और एक लेडीज भी है।

लटका हुआ नजर आ रहा है और ट्रक मे बहुत सारे लकरी देखने को मिल रही है।

कार है जो उजला कलर का है और कुछ पेर भी है ऊपर आसमान है।

सामने एक बड़ा ए_टी_एम देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जो--

सामने एक बरा रोड देखने को मिल लहा है।

और कुछ कार्टून भी यहां मौजूद हैं कुछ लाइटे भी जल रही हैं।

जिसके ऊपर बहुत सारे चट्टानें हैं और गुफा में एक आदमी देखने को मिल रही है।

और रॉड से बहोत बड़ा रेलिंग है बना हुआ।

सामने एक मंदिर देखने को मिल रही है जिसका दीवाल उजला कलर से पेंट किया गया है।

और कुछ बोर्ड लगी हुई है और अ बिल्डिंग के ऊपर टंकी लगी हुई नजर आ रही है।

जो अलग अलग रंग के ड्रेस पहनी हुई है और ऊपर में कुछ--